इसके पीछे एक मकान लगा हुआ है जोकि टीन शैड से ढका है।

इनकी साइड की टाईलों पर कुछ प्रिंट भी है।

एक ही दीवारों का रंग सफेद है।